बस यहां पर दो ही जन है।

यह एक अस्पताल है जिसका नाम है सदर अस्पताल।

एक कार है वाइट कलर का और इस साइड में बाइक साफ लॉक लगाए हुए हैं।

यह एक मोबाइल शॉप है।

दुकान में सामान बहुत सारा प्रकार का है।

यहाँ पर एक इंजीनियर खड़ा है उसके हाथ में एक पेपर है।

यह रात का समय है।

एक दोहे में देख पा रहा हूं यहां पर जो खड़े हैं एक आदमी जो वेट कर रहा है।

जोकि बहोत ही बड़े हैं जंगल है जो पेड़ पौधे से भरा हुआ है और--

बतख पकड़ा हुआ है जो झूल रहा है यहां पर और एक उसके पीछे एक लड़की है जो बच्चे को देख रहा है।

एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और बहोत खुश लग रहे हैं।

दूर जंगल पेड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल है स्कूल के चारो तरफ कोई नहीं है।

एक मैक्सिमो व्हाइट कलर का है दूसरा येलो कलर का और सामने वाला ब्लू कलर का है।

यह एक म्यूजिक टीचर कंपनी का शॉप है।

और यहां पर चारों तरफ घेरा लगाया हुआ है जो आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है यहां पे।

यह एक चर्च है जो की रात का समय है।

ऑरेंज कलर लगाया हुआ है घर का--

तीन फाउंटेन है जो खूबसूरत दिखाई दे रहा है रात के मौसम में।

नजारे का देखने का आनंद ले रहे है।

और एक डस्टबिन है जोकि आदमी लोग आते है कुछ खा के कचड़ा यहां फेंकते है।

और बैठने के लिए जहां पर एक चेयर है।

एकदम खाली सा है यहां पर बहुत अच्छा सा पेड़ पौधे पेड़ हरियार है।

और एक फोन है स्टीक पर जो कैप्चर कर रहा है इन सब का।

और यहां पर लाइट ऑफ डाउन करने का बोर्ड लगाया हुआ है।

और एक ने तो मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक यहां पर मेम हैं जो साड़ी पहना हुआ है और उसके हाथ में थाल है।

और कलर देखने में ब्लू ऊपर में व्हाइट और टीन का घर बनाया हुआ है।

यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है कुछ लिख रहा है आदमी ने हरे कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

होटल का डिजाइन तो बहुत अच्छा है।

यहां पर एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर बना हुआ है।

इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं।

यह एक होटल है होटल का नाम आमंत्रण रिसार्ट लोडिंग एंड फूडिंग हियर डॉआर्स रॉकी इसलैंड है।

यहां प धान का पिसाई हो रहा है एक ट्रैक्टर में ट्रैक्टर के पास मशीन लगा हुआ है धान का।

यहां पर तीन चार लोग है जो बैठे हैं एक खड़ा है और दो आदमी जो काम कर रहा है।

और देवी देवताओं जैसे कार्तिक विष्णु और महादेव का तस्वीर यहां पर है।

तीन आदमी बैठे हुए हैं दोनों ने गमछा लगाया हुआ है माथे पर।

यहां पर दो घर है।

यहां पर एक बड़ा सा विशाल मगरमच्छ यहां पर लेटा हुआ है।

और आसपास स्कूटी बाइक और एक कार है जो जाती हुई दिखाई दे रहा है।